के बीच में किनारे किनारे बहुत सारे हरे भरे पौधे लगे हैं।

बहुत सारे पीले कलर के एक्सरसाइज करने वाले मशीने रखे हैं।

एक खूबसूरत सी रेस्टोरेंट है।

एक शादी के लि मंडप सजा हुआ है गुलाबी कलर से।

दवा कि दुकान है जिसमें बहोत सारी दवाएं सजा के रखी गई हैं।

और एक व्यक्ति उसके बाहर खड़ा है।

और सोफा लगा हुआ है सोफे पे कवर है।

रोड का रंग नारंगी है।